ये एक डिपार्टमेंटल स्टोर की पिक्चर है जहां पे बहुत सारे कपड़े दिखाई दे रहे हैं छोटे बच्चों के कपड़े दिखाई दे रहे हैं।

और फीमेल्स के लिए यहां पे ट्राउजर है टी शर्ट हैं बहोत सारा कुछ इस मॉल में है।

योगा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन लोगों के पास ब्लू-ब्लू मैट्स और रेड मैट्स हैं।

और इसके अंदर तीन एल_सी_डी लगी दिखाई दे रही हैं इसमें--

देख सकते हैं कि यहां पे डिफरेंट डिफरेंट कलर के फ्रेम्स पड़े हुए हैं व्हाइट कलर के येलो ग्रीन --

एक बंदर बैठा हुआ दिखाई दे रहा है एक बटरफ्लाई भी--

दोस्तों बिस्तर पर एक कपड़ा हरा कपड़ा बिछा है दीवार पर मेडिकल उपकरण रखने के लिए सेल्फ लगे हैं सेल्फ पर दवाएं और--

वेटिंग रूम की तस्वीर जहां पे--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

और इसकी जमीन मिट्टी की बनी हुई है मिट्टी अ जमीन पर--

ये तस्वीर गौतम स्टेशनरी की तस्वीर है।

येलो कलर की टी शर्ट डाली है और उसके साथ में भी बहोत सारी दुकाने है।

खाने की बहुत सारी आइटम्स यहां पे इस दुकान पे पड़ी हुई हैं येलो कलर की बॉटल है जिसपे सफोला लिखा हुआ है।

पूल बना हैं पुल के साथ में एक नदी है नदी में ग्रीन कलर का पानी हैं उसमें--

ब्लेजर डाली हुई है स्काई ब्लू कलर की पैंट डाली हुई है और यहां पे मिट्टी मिट्टी पड़ी हुई है और यहां पे--

उसके गी दरवाजे का कलर व्हाइट लगा है सिल्वर कलर की कुंडी लगी हुई उसके साथ में एक डस्टबिन है डस्टबिन में बहोत सारे कागज पड़े हुए हैं।

ये एक कॉलेज का दृश्य है जिसमें बहुत सारे फ्लैगस लगे हुए हैं दिखाई दे रहे हैं उसके बाद--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

और उसकी जिन जिनके फ्लोर का कलर रेड और ब्लैक --

तीन चार बेड लगे दिखाई दे रहे हैं। ऑपरेशन के इक्विपमेट्स के यहां पे सामान पड़ा हुआ है।